रूम के अंदर कंप्यूटर है और सी_पी_यू है और कीबोर्ड है।

नीचे में वहां पे सिलेंडर है वो रेड कलर के है इधर झूला टंगा हुआ है।

वहां पे स्विच बोर्ड है उसके अंदर केबल चार्ज हो रहा है।

यहां पर एक बच्चा जा रहा है रेड कलर का पहन के शर्ट --

यहां पर नीचे रेड कलर का है मिट्टी है और बहुत सारे छोटे प्लांट है।

यहां पर बाहर का दीवार रेड है और अंदर में व्हाइट है।

आदमी के हाथ में फोन है।

रेलवे स्टेशन के अंदर बहुत सारा सीढ़ियां है सीढ़ी के बगल में एक बहुत सा बड़ा छपरा है।

ऑरेंज है और रेलिंग है सीढ़ी है यहां पे बहोत सारे पानी है पानी के बहोत सारे नहा रहे हैं आदमी --

और सूरज की रोशनी आ रही है वाइट कलर का दीवाल है और फोटो फ्रेम टंगा हुआ है।

इधर में एक रेड कलर का पोस्टर टंगा हुआ है।

सा यहां पर ग्रीन कलर का बोतल है और यहां पर ब्लू कलर का डब्बा रखा हुआ है यहां पर व्हाइट कलर का रखा हुआ है।

समान और यहां पे नीचे कचरा फेंका हुआ है यहां पर एक आदमी है वो फोन चला रहे हैं।

के बगल में यह वाइट कलर का डब्बा रखा यहां पे झोला टंगा हुआ है उसका--

कप पूरा दीवाल का कलर व्हाइट है यहां पर ए_सी लगा हुआ है।

यहां पे एक मशीन के ऊपर आदमी का हाथ रखा हुआ है।

यहां पे बहोत सारे मिट्टी है और यहां पे बहुत सारे ईट है यहां पे बगल में बालू है एक आदमी आ रहे और यहां पे एक आदमी के हाथ में झोला है।

टेबल के ऊपर कीबोर्ड रखा हुआ है और लैपटॉप और कंप्यूटर और टी_वी रखा हुआ हैं।

बगल में एक पत्थर है पूरी मिट्टी से पूरा गिला है।

उसके बगल में घास है सूरज की रोशनी आ रही है।

इस दृश्य में एक रूम है रूम के अंदर बहुत सारे रैक है।

और कड़ाही का कलर सिल्वर --

ए_सी का कलर व्हाइट है ए_सी के ऊपर फोन रखा हुआ है और यहां पे एक आदमी ए_सी को ठीक कर रहा है अ आदमी का शर्ट का कलर येलो है और यहां पे लोहा का पाइप है।

यहां पर एक खिड़की का डिजाइन है ऊपर में बहुत सारे ईटा लगाए हुए हैं।